बहोत सारी लेडिस दिखाई दे रही है।

जो की एक ग्रीन कार्पेट पर बैठे हुए हैं।

है एक बन्दा बाहर खड़ा हुआ दिख रहा है।

पैर पोछने का कपड़ा रखा हुआ दिख रहा है।

हमें एक लेडिज दिख रही है।

लकड़े की नाव दिख रही है।

और एक स्पीक दे रहा है।

और पौधे भी दिख रहे हैं।

डायमंड टिंबर नाम लिखा हुआ है।

टेंट लगा हुआ दिख रहा है।

बीयर की बॉटल्स भी नजर आ रही हैं।

इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

कई सारी वॉच दिखाई दे रही है।

कई सारी टी_वी दिख रही है।

टाइल्सो का कलर अलग अलग दिख रहा है।

सभी का पिक ले रहें हैं।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यह पिक एक किले का साबित होता है।

यह पिक एक नदी का पिक साबित होता है।

अलग अलग तरह के घड़ी भी दिख रही है।